इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और सोफे कुर्सी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर बैंक दिखाई दे रहा है और खिड़की भी नजर आ रही है।

इस इमेज में एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में बस खड़ी दिखाई दे रही है और यहां पर दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर डॉक्टर का केबिन दिखाई दे रहा है जहां पर अं डिब्बे मे दवाईयां नज़र आ रही है।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

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर ये लड़कियां डांस करती दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है और ऊपर बलूंस भी लगे हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज में सड़क दिखाई दे रही है सामने गेट के बाहर पास में बिल्डिंग भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक मैदान दिख रहा है जहां पर अ लेडीसे गिफ्ट बांटती नजर आ रही है।

येस इमेज में यहां पर सामने एक दुकान दिखाई दे रही है और बाहर शो प्लांट्स भी लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर हॉल दिखाई दे रहा है और बहोत सारी वॉच भी नज़र आ रही है।

इस इमेज में यहां पर मैदान दिखाई दे रहा है और मेला भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर जंगल दिखाई दे रहा है और सामने एक झोपड़ी भी नजर आ रही है।

इस इमेज में एक पुस्तक की दुकान दिखाई दे रही है और ब्लू कलर का टेबल भी सामने नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है बाहर टेबल कुर्सी रखें नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में एक मैदान दिखाई दे रहा है और कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हरे रंग की कार दिखाई दे रही है और कुछ गमले भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है और यहां पर एक व्यक्ति भी --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

इस इमेज में देखिएगा सामने मंदिर दिखाई दे रहा है बाहर दो लड़के खड़े नजर आ रहे है।

आ न गेट नजर आ रहा है और एक वैन भी खड़ी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर काफी सारी पब्लिक दिखाई दे रही है और इमारत भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और ऊपर धर्मशाला लिखा नजर आ रहा है।